पूल के ठीक पीछे बहोत सारे पेड़ पौधे है।

इस चित्र में एक बड़ा सा का बर्तन दिख रहा है।

आस पास बहोत सारे खाने के पदार्थ भी दिख रहे हैं और थोड़ी सी मिर्चियां और गोल गप्पे भी दिख रहे हैं।

कान के सामने एक कांच की अलमारी है जिसमें विभिन्न प्रकार की मिठाई और नमकीन रखे हुए हैं।

ऊपर की शेल्फ पर कुछ कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतले भी रखी हुई है।

इस चित्र में दो लोग हैं।

ये नाम लाल बड़े अक्षरों में लिखा गया जिससे यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है।

ये चित्र एक पार्क का है।

पीछे भगवान के बहुत सारे चित्र है।

ये एक सड़क का चित्र है।

छवि में ऊंची नीची पहाड़े दिख रही हैं।

छत पर कई पंखे लगे हुए हैं।

फूल से ओम और शिवलिंग भी बनाया गया है।

ये चित्र एक इमारत का है।

इस इमारत के नीचे दो दुकानें भी दिख रही है और इसके आसपास बहुत सारे खड़े लगे हुए हैं जिसमें पेड़ पौधे उगाए गए--